यह एक जिम है जो की बहुत ही अच्छा हैै इधर जिम के बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं जैसे वेट लिफ्टिंग पंचिंग बेग ।

यहां एक अ तालाब है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा --

-- के चारों ओर पेड़ अ है जिससे यह और भी खूबसूरत लग रहा है और इसके चारों तरफ घर भी हैं।